जहां पर दुकान के अंदर एक पुरुष बैठा है उसका चेहरा ब्लर है।

तस्वीर में हमें कुछ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें कुछ पुरुष होली खेलते नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें ढ़ेर सारे गमले रखें हुये नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें गार्डन का दृश्य दिखाई पड़ रहा है।

और यहां से एक रोड गया हुआ है रोड के सामने काफी हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में हमें एक पोस्ट ऑफिस नजर आ रहा है।

उनके ठीक पीछे काफी बड़े पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और यह सारा गार्डन जालियों से घिरा गया है।

तस्वीर में हमें एक बहुत ही बड़ा घर दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक लड़का अपनी पैंट को प्रेस करते हुए नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक हॉस्पिटल का रूम दिखाई दे रहा है।

सर खड़ा हुआ है उसका चेहरा ब्लर है आगे बोर्ड में वह गाईड कर रहा है।